प्लेट रखा गया है जिसके उपर एक जलेबी जेल है प्लेट में बहुत सारा जलेबी है।

यह सत्संग पूर्णिया का फोटो है जोकि कोर्ट स्टेशन के पास है बना हुआ |

और आईना लगा हुआ है क्लास में और क्लास बहुत ही सुंदर है एक बूढी औरत बैठी हुई है।

सामने एक हरे रंग का परदा है।

प्रतियोगिता परीक्षा अम धार्मिक पुस्तके भी मिलती हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग --